सभी गाड़ियां देखने मे लगभग एक ही किस्म की लग रही है।

जिसमें ब्लड बैंक का बैनर भी लगा हुआ है और इसमें एक लोहे की जालीनुमा खिड़की है लेफ्ट साइड में कुछ बैनर भी लगा हुआ है।

ये किसी पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने की बिल्डिंग की तस्वीर है इस तस्वीर में इस बिल्डिंग की छे खिड़कियां नजर आ रही हैं और सभी खिड़कियां खुली हुई हैं।